ये एक भोलेनाथ का मंदिर है जो जहानाबाद में है ये मंदिर बहोत पुराना है ।

आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे भी है ।

ये देवी माँ का एक मंदिर है जहाँ पे देवी माँ की मूर्ति है मातारानी की जो शेर पे सवार है।

यह अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल है।